और दीवाल पर बहुत सारे बैनर लगे हुए हैं।

और एक भगोना रखा हुआ है एक चाय छनि रखी हुई है।

बहोत सारी बाइकें खड़ी हुई है।

एक बहुत बड़ी दुकान है।

यह एक बहुत बड़ी दुकान दिखाई दे रही है।

बहोत अच्छी टाइले बिछी हुई हैं पीछे एक आदमी दिखाई दे रहा है।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

पीछे एक टेबल है टेबल पर कुछ ग्लास और पेपर और बैग दिखाई दे रहा है।